ये एक मंदिर हैऔर यह किस भगवन की मंदिर है हमको पता नहीं है |

जो एल बहुत अच्छा दिख रहा है बहुत अच्छा-अच्छा लाइट्स भी लगे हुए है ये बिल्डिंग काफी देखने में बड़ा है इसके साइड्स में पोल लगे हुए हैं लाइन का |

ये एक लाइट हाउस है इसमें हर एक तरह का लाइट्स है और आगे फैन भी है और एडवरटाइज के लिए दो चार पांच छ बोर्ड्स है इधर--

और इसकी साइड साइड में घर है जिसपे लाइट्स लगे हुए है यहाँ से दिख रहा है बहुत अच्छे से और इसके नजदीक में भी एक टीन वाला घर है।

इधर एक फैन भी है छोटा फैन भी है दो छोटा फैन है और कुछ कार्टून में सामान पड़े हुए है और इधर बहु--

एक पीला कलर का घर है और साइड में साइड में भी वैसा ही घर है।

--और एक पेड़ भी है इधर साइड में जो थोड़ा सा काला दिख रहा है और इधर पोल भी है जो लाइन का है।

और इसके बाहर निकलने वाले रास्ते भी हैं एक गेट हैं और दो छोटा छोटा गुफा जैसी भी हैं और इसके उपर जाने के लिए सीढिया भी हैं।

टेबल बैठने के लिए दिया हुआ है और इसके आगे कार्टून में बहुत सारी लाइट्स है और इसका प्रोपराइटर है प्रदीपजी मोबाइल नंबर सब कुछ इधर--